ये इमेज देख के ये लग रहा की ये एक --

यहाँ पर कुछ कपड़े दिखाई दे रहे है जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि ये एक --

इस इमेज में देख के यह प्रतीत हो रहा है कि यह एक कॉलेज का कैंपस सा दिखाई दे रहा है।

इमेज में देखकर ये प्रतीत हुआ है की एक बंदा जिम में एक्सरसाइज कर रहा है करते हुए --